खाना लगाने के लिए और यहां पर फर्श पे टाइल्स लगी हुई हैं।

और यहां पर बहोत आदमी हैं जो सामान ले--

और यहां पर शीशे के चौखंटे फ्रेम बने हुए हैं।

यहां पर एक आदमी है और यहां पर एक प्राचीन मंदिर--

और एक मेज भी रखी हुई है और इस बेड पे वाइट कलर की बेडशीट है।

और यहां पर एक पॉन्ड्स का पाउडर भी रखा हुआ है।

और यहां पर दो औरतें जिम कर रही हैं।

यह एक ऑफिस है और यहां पर एक ब्राउन कलर की मेज रखी हुई है।

और यहां पर कुछ बाईकें और स्कूटी भी खड़ी हुई हैं।

छे बॉडीबिल्डर्स की ट्रॉफी और एक फर्स्ट चैंपियन की ट्रॉफी रख --

यहां पर दो लड़कियां और तीन लड़के डांस कर रहे हैं।

और यहां पर ब्लैक कलर के बोर्ड और उसपे वाइट कलर की लिखा--

यहां पर एक कारखाना है जिसमें बहोत सारे पंखे लटके हुए।

और यह शिप एक रस्से से बंधी हुई हैं।

और यहां पर बहोत सारी लाइटें भी जल रही है।

और यहां पर एक डोर है और यहां पर एक बहुत बड़ा सा--

यहां पर बहोत खूबसूरत सा इंटीरियर है जो दर्शाता है कि यह एक दुकान है।

और उसपे गद्दे टाइप में रखे हुए हैं और एक मेज भी है।

और यहां पर एच_डी_एफ_सी बैंक का ऐड है।

और यहां पर व्हाइट कलर की दीवाले हैं और--

और यहां पर एक गिलास लगा हुआ है बहुत बड़ा।

और यहां पर ब्लू और वाइट कलर की एक बहोत बड़ी सी छत है।

एक रेड कलर का शर्ट पहने खड़ा है और दूसरे से बात कर रहा है।

और कुछ पेड़ घर के किनारों पे लगे हुए हैं।